एक नदी दिखाई दे रही है जिसमें पानी भराहुआ है।

जहां पपे दो शिवलिंग दिखाई दे रही हैं इस पर काले रंग का नाग बना हुआ है।

यहां पे एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी है।

एक मैदान है जहाँ पे छोटी छोटी घास उगी हुई है।

जिसमें कीर्ति योगा लिखा हुआ है ये बच्चे सब योगा कर रहे हैं।

यहां पे बहोत सारे शटर दिखाई दे रहे हैं जिनके शटर ऊपर है सफेद रंग के हैं यहां पे लाइटे जल रही है।

यहां पे बहोत बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर भी है जिससे कुछ झरना सा गिर रहा है।

इन पत्थरों पर छोटी छोटी घास होगी हुई है इस नदी में बहुत लोग नहा रहे हैं और कुछ लोग पत्थर पर बैठे हुए हैं।

यहां पे टीन के तख्ते भी पड़े दिखाई दे रहे हैं यहां पे लाइट भी जल रही है।

पास में छोटी छोटी कर घास उगी हुई है आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

आसमान का रंग नीला और सफेद दिखाई दे रहा है यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे--